किसी कॉलेज फंक्शनस में या उम किसी अन्सांस्क्रुतिक कार्यक्रम में लडकियाॅं ग्रुप डांस करती हैं और इस ग्रुप डांस में एक ही प्रकार के स्टेप का जब प्रयोग किया जाता है।